और बेड पे एक कुशन रखा हुआ है।

में कांच के गेट लगे हुए हैं मिरर के--

यहां सामने मुझे एक रूम दिख रहा है हॉल जैसा--

और रूम में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।

और मंदिर का गेट हर कलर से कलर किया हुआ है खूबसूरत डिजाइन की हुई है।

बिल्डिंग के बाहर बाइक खड़ी है और बिल्डिंग को पूरा कांच के मिरर से बनाया हुआ है विंडो सारी--

यहां सामने मुझे काउंटर्स दिख रहे हैं और एक--

और पीछे छोटा छोटा सा घर बना हुआ है पीछे पहाड़ हैं।

और टेबल रखी हुई है रेड कलर की मैट रखी हुई है और एक गेट दिख रहा है। विंडो दिख रहा है।

यहां सामने मुझे एक रूम दिख रहा है रूम में दो लोग बैठे हुए हैं।

बिल्डिंग येलो कलर से पेंट है और बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कुछ छाता ले के बैठे हुए हैं।

लोहे के रैक में टंगे हुए हैं।

ऊपर बोर्ड र लगा हुआ है जो ब्लैक कलर से पेंट है ।

और सब घरों पे बोर्ड लगे हुए हैं।

और पेड़ पौधे हैं सामने एक घर दिख रहा है।

और कुछ लोग फ़र्श पर बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हैं बहुत सारी चेयर है।

जो कि ये एक अ डेकोरेशन किए हुआ --

और बिल्डिंग के बाहर वो फोर व्हीलर खड़ी है।